खराब जो समान रहते हैं मशीनरी चीज की उसे टाइप से यहां पे रखी गई है और ये काफी मात्रा में है।

अंदर से जो कुर्सी टेबल लगी हुई है वह भी काफी डिलीशियस और अच्छी लग रही है जो--

वुडन टाइप से लग रहा है सामने का जो इंटरेस्ट और यहां पर कुछ बैरीकेट वगैरा लगा दिए हैं।

यह शहरी इलाका है जो बड़े-बड़े गगनचुंबी ईमारतों से यहाँ पे भरा पड़ा है जो खाली जगह है वहाँ पे गटर का सीन दिखाया गया है।

यह एक जिम का फोटो है यहाँ पे खूबसूरती से इन्हें डेकोरेट किया गया है कांच कांच का जो दरवाजा है अंदर से बाहर की ओर दिखती हुई यहाँ पे मैदान जैसा --

यह एक गांव का तलाब है जो काफी पुराना सा लग रहा है आस पास जो है स्कूल वगैरह बने हुए हैं।

सामने एक बहोत बड़ा सा यीशु मसीह का जो चित्र है या मूर्ति कह सकते हैं वह लगा हुआ है।

अरुण की जो आइसक्रीम पार्लर काफी बढ़िया और अच्छी मात्रा में यहां पे साफ सफाई की गई है।

आस पास हमें एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है ये रोड के किनारे बनी हुई जो दुकान हो सकती--

और अलग अलग रैक में सबको बढ़िया से सजा कर रखे गए हैं गुड़ियों की क्वांटिटी ज्यादा मात्रा में है।

सामने नजर आ रहा है बहुत सारे पेड़ पौधे और हरियाली से भरा पूरा ये तालाब--

छोटा सा ही है वर्टिकल साइज में है और एक सोफा जो है यहां पे बना हुआ है बैठने के लिए--